वो सरेआम नजर आ रहे है।

वो एक पौधा लगाया हुआ है और पौधा जो है वो हरे रंग का है।

दो एक्टिवा जो है वो वैसे खड़ी हुई है।

यहां पे उपर बोर्ड पर लिखा हुआ है।

रेड कलर के फूल्स भी हैं यहां पे।

इस दृश्य में हम देख सकते हैं जैसा कि यहां पर लॉन्च एरिया टाइप लग रहा है।

और जो साथ मे जो है बीच साइड में इक--

आप देख सकते हैं नीले रंग की विंडो भी हैं।

काफी सारे बेंचेस लगाए हुए हैं।

सैनिटाइजर का एक स्कैन लगा हुआ है।

बोरियों के ऊपर हम देख सकते हैं साफ करने वाला झाड़ू भी है।

और एक नाम जो है वो पीछे आ रही है मल्टी ब्रैंड कलर में--

लिफ्ट भी लगी हुई हैं जिससे कि हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं।

उसके साथ में एक केबिन है जिसमें एक चेयर है।

काफी सुंदर दृश्य है पूरा हरा भरा है।

और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें--

व्हाइट कलर का एक बोर्ड भी नजर आ रहा है।